सामने एक साइड पेे बताते हैं जो सफेद रंग के है दीवाले हैं नीले रंग की और जारी लगी गई है। पेड़ पौधे हरे रंग की पत्तियां नीचे हरे रंग की पट्टी बुरे रंग की मिट्टी है।

इस साइड पर एक बुक स्टोर है जो एक अंदर एक औरत बैठी हुई हैऔर बहुत सारे पोस्टर लगी हुई निचे--

पर छात पीले रंग की और भूये रंग की है सींड़ी बना हुआ सफेद रंग की दीवाल खड़ी है जो पी नीले रंग की है।